ज्यो फोटो में तो ऐसो दिखाई पढ़ रहो ।

गधा दो एक साथ खड़े दिखाई --

उनमें चिमीटी लगी दिखाई गई है।

ईटें प्लास्टर लग हो दिखाई गई है।

ईस्कूल को कमरा दिखाओ गौ है। कमरा में --

इस इमेज में कुछ शॉप वगैरह दिखाई दी है ।

एक खिड़की खुली दिखाई गई है।

अं सयो-नमकीन वगेरा दाल रखी दिख --